छोटे छोटे से डब्बे ऐसे बने हुए हैं सामान रखने वाले।

बहुत सारे पेड़ है जोकि कुछ काले गमले में रखे हुए हैं।

व्हाइट कलर की छत है और एक ए_सी लगी हुई है सफेद कलर की।

दीवाल पे चित्र बना हुआ है।

वो पीछे बड़े बड़े से पेड़ है उगे हुए।

यहा पे एक लड़की खड़ी हुई है जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पेहनी है और लाल कलर की कॉलर है।

और हाथ में मोबाइल पकड़े है।

और यहां पे बहुत सी कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

और यहां पे जमीन में बहोत भारी भारी घास--

इसके उपर टीन पड़ी हुई है और सफेद कलर किधर है।

और तालाब के बाहर बहोत सारे हरे भरे पेड़ लगे हु--

सफेद कलर के ऊपर और नीचे लाल कलर से लिखा हुआ है।

यहां शीशे लगे हुए हैं।

यह रोड है रोड पे एक काले कलर की कार खड़ी हुई है।

और कुर्सियों पे सब नंबर लिखे हुए हैं जैसे कि ए बीस ए उन्नीस ए अट्ठारह ए सत्तरह इस तरह से।

जो खेल रहे हैं फील्ड में हरी भरी घास है।

और इसपे बहोत सी चीजें खाने पीने की मिलती है।

और इसकी छत सफेद कलर की है।

काले कलर की दीवार है एक छत है जिस पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन जिम ।

और यहां एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है नो मास्क नो एंट्री ।

यह एक ट्रेन है इसमें एक आदमी बैठा हुआ है और पूरी खाली है ट्रेन ।

और दरवाजे के ऊपर सफेद कलर की जाली लगी हुई है।